और जॉब बहुत अच्छी प्राप्त होती है।

आप से निवेदन है की कुछ वर वर्कर को और रखिये।

अलग से किसी को बुलाया जाता है और इसमे शादी होता है और शादी मे बहुत मजे आते है हमलोग भी गए है और बहुत मस्ती किये है।

और में पर्सनल यूज के लिए यूज़ कर --

सब ही को पढाई का मौका मिलता है और इसमे पेंटिंग का काम चल रहा है अभी टेल्स बगेरा-बगेरा।